ये तस्वीर किसी वाटर पार्क की लग रही है।

यह तस्वीर किसी रोड के किनारे से ली गई हैं जहाँ शाम का बहुत ही खूबसूरत समय नजर आ रहा है।

यह दृश्य की आलीशान इमारत के बाहर की लग रही है जहाँ किसी बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ की नजर आ रहा है।

जो ग्राहकों के लिए बहोत ही व्यवस्थित ढंग से रखे गए हैं ताकि ग्राहक उनमें से अपना पसंदीदा सामान ले सकें।